यहाँ एक जगह हैं उसके आस पास बहुत सारे कार दिख रही है और यहाँ पर कुछ लोग भी दिख रहे है और यहाँ पर कुछ डब्बे पड़े हुए है जिनका कलर नीला दिख रहा हैं।

उसके अंदर बोहत सारी चिजे दिख रही है।

यहा एक जगह है उसके आस पास बहुत सारे पेड़ पोधे और बहुत सारी हरियाली दिख रही है और यहा पर एक डैम बना हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदरसे पानी आता हुआ दिख रहा है।

और यह नजारा बहुतही सुंदर दिख रहा है।